लोग योग करे है नीच्चे एक वाइन कलर की गाड़ी खड़ी है फोर व्हीलर है ।

यह एक मदर डेयरी है और यहां पे लिखो है मदर डेयरी ।

ओके सामने लिखो है मोविटेंस सिनेमा सॉ यहाँ आप देख सके है मूवी ।

लोग खड़ो है एंजॉय करें हैं और यहां नीचे देखे हैं ग्रीन ग्रीन घास ।

फ्लैट है ये बहुत बड़ी फ्लैट और बिल्डिंग है इसमें देख रहे हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ है अखिल भारतीय ।

यो एक गार्डन है और यो बहुत बड़ो गार्डन है और यहाँ पे दिक्खे है ग्रीन कलर ।

औ येलो कलर के और इत्ते सुंदर-सुंदर से फ्लावर है नीचे ग्रीन ग्रीन घास है।

चेयर पड़ी है और टेबल पड़े हैं।

ये सामने देख रहे है आप यो गाड़ी खड़ी है फोर व्हलीर है यो वाइट कलर की है ।

यहाँ पे आप जावेंगे तो यहाँ पे बर्गर मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा हाई फाइ बर्गर मिलेंगे यो।

नीचे बाई मैट बिछे है ओ ये मैट बिछे है यो का मैट है यो ओ।

लंच रखा है बेड पे और साइड पे पॉट रखा है एक अ स्टैंड ।

और इसके आसपास घर भी दिख रहे है एक तो बंदे भी दिख रहे हैं बैठे मन तो ।

बना है और यहां पे लिख रखा है यो बुक --

कड़ी भूख लगन लग रही है और इधर लाइट भी लगन लग रही है मेरे को दिख रही है।

और मैडम है मैडम साड़ी पहन के मास्क लगा के खड़ी है और।

ये पढ़े हैं यहां पे और आप देख सक रहे हैं कई गर्ल्स भी हैं उस साइड में बैठी हैं और ये लग रहे हैं।

सो यहाँ पे देख सके है लेडीज बैठी है और कटी करने लाग रही है हाथ में कप पकड़।

और यो बुक स्टोर है यहाँ पे बुक ही बुक दिख रही है मने तोह मेडिकल दिख रहो है ऊपर तो वैसे तो ये।

वैसे तो यह बुक स्टोर है बिकॉज़ यहां पे बुक्स ही बुक्स दिख रही है मैंने ।

और पीछे पूरा देखे है ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे हो रहे है जंगल टाइप हो रहे है पूरा ब्यूटीफुल दिखने लाग रहा है।

जी_टी रोड पे कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और एक्टिवा खड़ी है दो-तीन ।

प्लेट में और तीन फ्लेवर की आइस क्रीम है इस पे चेरी वेर्री पड़ी है और आइस क्रीम ।

और आइस क्रीम ठंडी होवे है गर्मियों में खावे है बच्चे भी खावे बड़े भी खावे बुड्ढे भी खावे ये।

यो एक बुक अ बुक्स स्टोर है यहाँ पे बुक मिले है इधर लिख रखो है अमृत बुक ।

सी_ओ डॉट कॉम ऐसे करके--

यह घर टीन से बनो है और इसके पास इधर साइड में एक कूलर ।

और गंगा जी में बहुत ही गढ़ो पानी पानी दिखने लाग रहो है घढ़ी दूर तक पानी पानी दिख रहो है।

बाबू आ रहे हैं अंकल आ रहे हैं जा रहे हैं और--

यू है पटैटो इसने हिंदी में बोले हैं आलू यू आलू है और यू आलू खेत में होवै हैं और।

टेस्ट लगन लाग रो है बिकॉज़ यू खेत से निकलो है आलू और इसमें।

साइंस आपातकालीन और क्रॉस अ माइनस अ सॉरी प्लस ।

बस ही बस है उस साइड भी बस है इस साइड भी बस है और लोग।

खड़ी मशीने रखी है डंबल रखें डंबल यो यो भारी डंबल है।

ऑरेंज कलर के फ्लावर है और--

तो सामने मैंने बहुत सारी मशीन दिखन लग रही है जो मशीन है जिम की जिम से और यहां पर लोग जिम करने आवे है अपने आप को फिट करें हैं ।

यो लोग जिम करन लाग रहे है यहाँ पे और ये मशीन रखी है भई जिम करो पतले हो जाओ खाओ पियो कम।

यहाँ पे बिस्किट है नमकीन है और आप देख सके है जे अ चाय पत्ती।

लग रहे हैं कुछ भाषण वाषण दे रहे हैं शायद कभी ।

यो बहुत बड़ी सी कंपनी है और इसमें देख सकै हैं बड़ा ब्यूटीफुल कंपनी है बहुत बड़ी है यो और इस।

यो देख रहे हैं आप यो है पार्क ठीक है पार्क में लोग आवे हैं मौज लेने मस्ती लेने रेस्ट --

और यहां छोटे-छोटे गमले रखे हैं बड़े - बड़े लंबे पेड़-पौधे हैं।

और पोमग्रेनेट रखे हैं भाई बनाना रखे हैं और।